और एक बोरी दिख रही हैं वहाँ पर बकरी बैठी हुई है | उसके ऊपर --

एक व्यक्ति है व्यक्ति जो सिर पर टोकरे में कुछ सामान लिए हुए हैं।

हाफ़ लोअर और हाफ़ टी-शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है जो टी-शर्ट और टोपी लगाए हुए ब्लाक पैंट पहने हुए खड़ा है चश्मा लगाए हुए है | खड़ी हुई है।

बाहर पत्थर पे और एक लेडिज है कपड़े पहने हुए चसमा लगाए हुए है और सॉक्स पहने हुए बैठी है।

मदिर है। मंदिर के पास एक ब्यक्ति खड़ा हुआ है जो साफ़ी लगाए हुए सफेद कपड़ा पहन हुए है ओर --

मगर एक लड़का खड़ा है जो चश्मा लगाए हुए ब्लैक कलर के कुर्ता पहने हुए पैजामा पहने हुए है और काई सारे लोग खड़े हुए हैं पीछे मंदिर के।

और एक टू व्हीलर गाड़ी खड़ी है दो व्यक्ति और खड़े है पूल से कई सारे व्यक्ति जा रहे है कुछ व्यक्ति बाइक से जा रहे है।